मूर्ति लगी हुई है और उसके पीछे भी एक मूर्ति गोल्डन कलर की--

--और जाहाँ पर इसके पीछे एक घर या मंदिर है शायद और क्रीम कलर से पुता हुआ है और इसके पास एक पेड़ दिखाई--

-- यहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ रहे है यह पे लाल कलर की कार्पेट बिछे हुए है उसके उपर लोग नमाज़ पढ़ रहे है कुछ आगे की तरफ कुछ पीछे की तरफ रोसनी हो रही है।